इस तस्वीर में एक बिल्डिंग है जिसके साइड में टिन शेड का एरिया है छोटा सा और उसके एन्ट्रेन्स पर एक काफी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है सर्विस का।

और जो बड़ा सा गेट लगा हुआ है वह मेटल कलर का है और ब्रिक कलर से पेंटेड है काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर --

और साथ साथ यहाँ किसी छोटे बच्चे के पैर दिख रहे हैं जो की शायद यह मछलियां धोता होगा या निकलता होगा या फिर खरीदने आया है।

ये तस्वीर शायद किसी छोटे जंगल की है जहाँ पर पतले- पतले बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं उन और बहुत सारी घासें भी हैं और यहाँ पर कुछ कूड़ा भी बिखरा हुआ है थोड़ा --

दुकान है जो किसी घर के निचे शायद बनी हैक्यूंकी साइड से ऊपर जाने का सीढ़ी का रस्ता भी है।

इस चित्र में बिल्डिंग्स बन रहीं हैं शायद क्यूंकि पीछे की बिल्डिंग है वो काफी ऊँची है और वो बन चुकी हैं और ये उसी बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है जिसपर अभी काम हो रहा है।

और यहाँ पर गेट भी बन चूका है जोकि अभी भी पेंटेड नहीं है और ये साइट ऑलमोस्ट कम्पलीटएड है थोड़ा फिनिशिंग वर्क बा --

इस तस्वीर में शायद किसी पार्टी का ऑकशनं है जहाँ पर काफी अच्छे से डेकोरेशन हो रखा है।

ये फोटो एक फैक्ट्री की है। जहाँ पर काफी सारा वेस्ट मटेरियल है और पीछे एक जगह फायर है जहाँ पाय शायद इन वेस्ट मेटेरियल्स को मेेल्ट किया जा रहा होगा ।